ये एक बड़ा सा जंगल है।

यहाँ निचे पूरा लवे की सीट है।

और यहाँ पर बैल्ट दिख रहा है और सामने एक मोटर बाइक खड़ी है।

यह एक यहां पे कुलर है वाटर बॉटल है।

पा बोहोत सारा यहाँ पे--

नल्ला पो-पोन बोहोत सारे इस दूकान में यहाँ पे--

ये एक यहां पे डॉक्टर की क्लीनिक है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे पेपर --

कभी यहाँ पे मेट्स रखे हुए दूकान में--

फेविकोल के डब्बे प्लास्टिक पैपा यहां पे बोहोत सारे--

मटका रखा हुआ है पानी का गिलास है बैठने के लिए यहां पे टेबल की भी है।

यहाँ पे निचे मेट बिछाये गया उपर लाइटा है।

मूर्तियों को बनाया गया हैं कपड़े से--

पीछे यहां पे टेबल आदमी खड़ा हुआ है सामान अंदर बहुत सारा यहां पे--

मोजा है बहुत सारे यहां पे आजू बाजू बिल्डिंगा है।

ये एक यहां पे एविन्यू फोटिन केफे --

यहां पे सेपरेट सेपरेट रूम बनाए गए हैं बैठने के लिए।

यहाँ पे बोहोत सारे लोग है और जिम कर रहे यहाँ पे सामने बड़े बड़े ग्लासेस लगाये गये --

यहां पे सैनिटाइजर की बोटल है कटोरे है येच केची है।

वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद का यहां पे--

बहोत सारे लोग है सोलर का खंजा लगाया गया में यहां पौधे भी हैं।

यहाँ ऊपर टेबल के ऊपर यहां पे रखा हुआ है बहुत सारे यहां पे--

और यहा पे घोड़े भी है बहोत सारे--

बड़ी सी होटल है यहां पे बहुत सारे--